इस पिक्चर में दिखाई जारा हे की ये पेट्रोल पम्प हे जिसमे अ लोग अपने गाडियों में पेट्रोल भरवा रहे हे।

और ये रोड जा रहा है एक कार जा रही है रोड पर और एक बाइक जा रही है बाइक पे दो अ --

और इसमे एक बच्चा राउंड वाली स्लाइड में झूल रहा हैं और एक दूसरा बच्चा हैं जो उसको उम झूले वाल झूले वाले बच्चे को देख रहा हैं।

हाँ जिसमे एक रेड कलर की गा कार खड़ी हुई है जो पेट्रोल डलवा रही है दो वाइट कलर की कार खड़ी हुई है।

अंदर ये ग्रीन कलर का य नीचे बिछा हुआ हे ये मेट --

और बहार बोहोत साड़ी गाडिया है जो खड़ी हुई है स्कूटी मोटर साइकिल और --

पुल के दो खंभे दिख रहे हे एक बड़ा दिख रहा हे एक छोटा दिख रहा हे ।

इसमें ब्लू और वाइट कलर का गेट लगा हुआ है सॉरी ये गेट नहीं है साइड से जो जंगला होता है वो लगा हुआ है ।

और सड़क के पास मे ही दो बिल्डिंग हैं।

ये कोई स्कूल कॉलेज जो भी है--

और इसमें बोर्ड लगे हुए है औ ब्लू कलर के बोर्ड लगे हुए है वाइट कलर से लिखा हुआ है।

दो चेर चेर रखि हुई हे और एक बेंच भी रखी हुई हे ।

उसके पास में दो पॉट रखे हुए हें उसमे भी कुछ फुल रखे हुए हैं।

और एक ग्राहक है जो दुकान वाले से कुछ सामान ले रहा है ।

एक गुरूजी बेठे हुए हें और एक आदमी खड़ा हुआ हैं।

और आस पास में बोहोत सारी भीड़ लगी हुई हैं।

इसमे दिखाया जा रहा हैं की किसी ने भी इस पिक्चर में जो गिलास रखे हुए हैं एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक ऊपर रखे हुए हैं।

इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है की ई एक झोपड़ी टाइप का बना हुआ है ऊपर की साइड से और निचे ब्रेंच रखी हुआ है निचे डस्टबिन भी रखा हुआ है।

और साइड से एक कार खड़ी हुई है कार के पास में ही बंगला ये घर बना हुआ है और आस पास में पेड़ पौधे लगे हुए है बोहत सारे पेड़ लगे हुए है।

आज इसमें बोर्ड लगा हुआ हें बबलू डेरी --

और इस दुकान के एक सामने मेन अ आदमी खड़ा हुआ हैं।

इस पिचर में दिखाया जा रहा है की अएक आदमी है एक ओरत है ।

दो सीढ़ियों से नीचे उतर रही हें एक बोर्ड लगा हुआ हैं।

और ऊपर खुला आसमान नीले कलर क जिस म--

इसमें दिखाया जा रहा हे की ये घर हें जिसमे बालकनी ह--

वो पानी का पोधो जिसमें से साइड से पानी निकल रहा --

और ऊपर माइक लगा हुआ है और दोंनो साइड में शेर की मूर्ति भी लगी हुई है।

ये यह मैदान जिसमे बास्केट बॉल अ खेलु साइड में खम्बे भी लगे हुए --

साईट से चावल के कट्टे भी रखे हुए हे और कुछ ग्राहक हे जो सामान ले रहे हे एक ग्राहक खड़ा हुआ हे और एक ग्राहक--

ये एक ए_टी_ऍम हे एच_डी_ऍफ़_सी बेंक का--

एक पर्सन तो अंदर ए_टी_एम से कुछ पेसे निकाल रहे हे और बाकि--

जिसमे एक बच्चा ऊपर चढ़ के स्लाइड करने के लिए जा रहा हैं और पास में एक नदी हैं और पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

खा रहे हैं पीछे कुछ तस्वीरें भी लगी हुई है और ऊपर लाइटिंग लगी हुई है।

ये एक कार का शोरूम है जिसमे अ ब्लू और रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है ।